इस फोटो में मुझको एक दुकान दिख रहा है।

फुट इस दुकान में बहोत सारे जूते चप्पल और सैंडल्स रखें हैं।

शॉप में एक दरवाजा भी हैं दरवाजे से अंदर का प्रोडक्ट्स भी दिख रहा हैं।

बिल्डिंग का कलर व्हाइट और ग्रीन में है।

इस फोटो में मुझे एक फुटबॉल फील्ड दिख रहा है।

इस फोटो में मुझको एक शॉप जैसा दिख रहा है।

इस फोटो में मुझको एक रेस्टोरेंट दिख रहा है।

पहाड़ी इलाका है और वेदर भी क्लॉडी क्लॉडी है।

इस फोटो में मुझको एक डीश है।

इस फोटो में मुझे एक झरना दिख रहा है।

यह टेबल रखा हुआ है बहोत सारा।

सामने बहोत सारे बर्तन रखे हुए हैं टेबल पे।

सामने एक बेसिन है और उसके साइड में एक टाॅवल भी रखा है।

इस फोटो में मुझको वॉटरफॉल दिख रहा है।

मेटल का ये सब लगा हुआ है रेलिंग जैसा है।

इस फोटो में मुझको एक घर का एंट्रेंस दिख रहा है।

वाल का कलर वाइट कलर का है।

सामने बड़े बड़े तीन मूर्ति लगे हुए हैं।

साइड में बहोत सारा समान रखा हुआ है।

और बहोंत सारे टैटू के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं।

मंदिर का कलर रेड और येलो में है।

इस फोटो में मुझको एक टूरिस्ट लोग की घूमने की जगह दिखाई है।

इस फोटो में मुझको एक प्लांट का शॉप दिख रहा है।

शॉप में बोर्ड लगा हुआ है।

अंदर में बहोत सारी बत्तियां भी जल रही है।

व्हाइट बोर्ड के साइड में एक ए_सी है।